इस पिक्चर में मुझे एक बड़ा सा बिल्डिंग नजर आता है।

इस तस्वीर में मुझे दिखने मिल रहा है एक बड़ा सा बिल्डिंग ।

चर्च का फ्लोर टाइल से बनाया गया है।

सभी लोग एक कलर का कपड़ा पहनता हुआ नजर आ रहा है।

बैकग्राउंड के पीछे में दो बड़े बड़े--

लाइट पोल्स भी दिखाई नजर आ रहा है।

जो की तीन स्टोरी का है ये बिल्डिंग --

जो की बैंक ऑफ बड़ौदा का एक एम्पलाई है या एक बैंकर है।

कई प्रकार के ग्रोसरी यहां सेल करते हुए नजर आ रहा है।